सर लोग अपने व्हीकल पे जा रहे हैं पीछे माता की फोटो है यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बता रहे कहां से कहां तक जाना है आपको।

पीछे एक ग्रिलस लगी हुई है पहाड़ों पे एक लेपडगदान पेटी रखी हुई है यहां पे लड़का जो पीछे--

ओ शटर है बंद है ऊपर शीशे लगा रखे उस से ऊपर घर है यहां पर पाइप लगी है छेद है दीवारों में --

में लगे हुए हैं जार में रखे हुए ऊपर ऊपर ग्रिल लगी हुई है यहां पे एक लड़का जो दो तीन लड़कियों के साथ--